और ये किड सेक्शन है जहां पे बच्चों के सारे सामान मिलते--

इस तस्वीर में हार्डवेयर की शॉप नजर आ रही है जिसका नाम हरिओम ट्रेडर्स है।

इस तस्वीर में एक जिम नजर आ--